और उसी के काफी सारे पंपलेट्स नीचे लगाए हुए--

कांच से है बनी हुई बिल्डिंग है और यहां पे एक सीमेंट का रोड भी है यहां पर पानी छिड़का हुआ है और आस पास यहां पर काफी सारे पेड़ पोधै हैं।